उसके आगे की तरफ दो हमें इंसान दिख सकते हैं जो जा रहे हैं उनके बगल में बहोत सारे पीछे पौधे लगे हुए हैं।

इस पिक्चर में हम घास देख सकते हैं उसके बगल में एक टेंट लगा हुआ है।

इसमें आगे की तरफ बहोत सारे पेड़ हैं और उनके बाद में पीछे एक दीवाल है।

दीवाल के पीछे एक पिरामिड वाले स्ट्रक्चर में एक दो बिल्डिंग बनी है उनमें से एक बिल्डिंग पे एक लाल झंडा है और दूसरे वाले पे एंटीना है।

ये पिक्चर एक जिम की है इसमें हम दो आदमी देख सक--

एक आगे खड़ा है जिसने एक बेल्ट पहेनी है और एक जींस पहनी हुई है।

इस पिक्चर में एक पिलर दिख रहा है जिसके ऊपर बेस दिया है।

ये एक मार्केट की पिक्चर है जिसके आस पास बहोत सारी बिल्डिंग है।

ये एक शॉप है जिसका कांच का गेट है।

और ये एक ए_सी हॉल है जिसकी एक कांच का दरवाजा है साइड में दो खिड़कियां है खिड़कियों के ऊपर दो शेड लगे हुए हैं।

ग्राउंड में हम यह देख सकते हैं कि साइड में कुछ सफेद सफेद एक इंसान खड़ा हुआ है पेड़ हरे हैं ऊपर आसमान बहुत बादली है।

ये एक मेडिकल स्टोर है जहां पे बहोत सारी अ दवाइयां रखी हुई हैं।

इसमें एक नाई की दुकान है जहां पे एक भैया दूसरे के बाल काट रहे--

और उसके बगल मे बहोत सारे पत्थर पड़े हुए है साइड मे और और आस पास मिट्टी है जिसपे वो चला रहा है।

और ये सोफे पर्पल और वाइट कलर के हैं सिल्वरी व्हाइट --

एक छोटा सा मंडप है जिसके सेंटर में एक चेयर रखी है।

नीचे सारी ईंटे और ये सब बिखरी हुईं है सीढ़ी सीढ़ी बगल में पड़ी हुई है।

यहां पे आगे एक विक्स की अ गोली की बॉक्स है।

यह एक कार की अ कार डॉलर की शॉप है जहां पे बहोत सारी द गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

पीछे एक शॉप है जिस पे कुछ सामान बिक रहा है।

साइड में बहोत सारी एक्टिवा पार्क की हैं यहां एक भाई आंटी भी दिख सकती हैं।

और इसके नि अंदर एक आदमी पीछे हमें दिख सकता है इस दुकान के ऊपर एक शेड लगा हुआ है।

पेट्रोल डिस्पेंसिंग मशीन भी लगी हुई है यहां पे बोहोत सारे कॉलम दिए हुए हैं उस पेट्रोल पंप के स्ट्रक्चर को संभालने के --

साइड में हमें गाड़ियां लिख सकती हैं उनके पीछे हमें ऑटो दिख सकते हैं काले रंग के इसके पीछे बहुत सारे पेड़ हैं।

यहां पे साइड में एक डेस्क है जिसपे एक पौधा और बहुत सारे नोटपैड और बुक्स रखे हुए हैं उसके बगल में एक चेयर है।

यहां पे एक अ स्पीड लिमिट का भी साइन है और लेफ्टहैंड साइड में दीवाल के एक चेयर पड़ी हुई है।

उसके आगे बहुत सारी रेत है और आगे बहुत बड़ा समुद्र है।

इस ज़ू के पीछे बहोत सारे पेड़ है पेड़ो के पीछे एक बिल्डिंग है।

ये एक पेट्रोल पंप है इस पेट्रोल पंप में पेट्रोल मशीन्स लगी हुई हैं।

बिल्डिंग के राइट हैंड साइड में एक बड़ा सा पोल है जिसपे अ पेट्रोल पंप का लोगो लगा है।

ये छोटे छोटे घर है जो पत्थरों के बने हुए है।